इस चित्र में बहुत ही बड़ा बड़ा घर दिख रहा है।

जिसमें बहुत सारा सामान है और दो तीन टेम्पू दिख रहे हैं।

इस चित्र में बहुत सारे हाथ धोने और टॉयलेट करने वाला बनाया हुआ है जो की एकरसे लाइन में रखा हुआ है।

इधर हाथ धोने वाला एक बनाया हुआ है।

दो लड़की उधर बैठकर बतिया रहे हैं और ऊपर में बहुत सारे बल्ब लगे हुए हैं।

एक पीला पीला पत्ता दिख रहे हैं।

बहुत सारे कुर्सियां लगी हुई हैं जो रंग बिरंगे हैं।

बहुत सारे लोग दिख रहे है।

दोनों तरफ बड़ा बड़ा शेटर लगे हुए हैं और ऊपर एक कुछ पोस्टर साटा हुआ है।

रंग बिरंगे लाइटें जल रहे हैं।

उधर बड़ा सा गेट दिख रहा है।

बहुत सारे पत्थर दिख रहे हैं जिसेसे छड़ बना रहे है और बड़े बड़े घर दिख रहे हैं।

जिसपे एक कपड़ा बिछाया हुआ है और दोनों कुर्सियों पर ऊपर में कुछ रखा हुआ है।

इधर कुछ डिबे और गिलास दिख रहे हैं।

चित्र में एक रेलवे प्लेटफार्म दिख रहा है।

ऊपर में कुछ तारे दिख रहे हैं ।

इस चित्र में एक लड़की दिख रही है और इधर कुछ कपड़े रखे हुए हैं।

एक मशीन रखा हुआ है।

बहुत सारे घास दिख रहे हैं।

इस चित्र में एक बहुत बड़ा हॉल दिख रहा है।

जिसके पीछे कुछ हरे भरे पेड़ पौधे दिख रहे हैं और एक मंदिर दिख रहा है।

एक बड़ा सा डिब्बा है।

एक बड़ा सा टी_वी लगा हुआ है और नीचे कुछ हलमेट दिखे हैं और कपड़ा दिख रहा है।

इसमें एक कार लगा हुआ है।

इस चित्र में एक होटल दिख रहा है।

जिसमें वाइट वाइट लाइट जल रहे हैं और दो तीन टेबुल रखे हुए हैं ।

चार पांच आदमी दिख रहे हैं और एक दरवाजा दिख रहा है।

इसमें बहुत सारे लोग हैं और कुछ बैलून लगे हुए हैं।

एक आदमी दिख रहा है।

इस चित्र में एक बड़ा सा फैक्ट्रिक दिख रहा है जिसमें से धुइंया निकल रहा है।